बैठे हुए कुछ लोग कुछ लोग नीचे से खड़े हुए हैं। कुछ लोग अनाउन्स कर रहे हैं।

वाले प्रवेश कर रहे हैं। यह गेट से बाहर निकल रहे हैं। यह गेट से अंदर आ रहे हैं।

एक पार्क दिखाई दे रहा है। बच्चों के लिए खेलने का सर्वोतम --